यहां एक टेबल पर खाने की थाली सजाई गई है।

यह चित्र किसी बड़े से शहर का है।

यह चित्र पार्क का है।

घर के अगल बगल कुछ पेड़ पौधे भी लगे हैं।

सामने की ओर काउंटर बना हुआ है जिसके ऊपर एक पंखा लगा हुआ है।

कुछ गाड़ियां और बाइक भी खड़ी हुई हैं।

यह चित्र अस्पताल का है।

यहां बेड नीले कलर के हैं और फर्श बिल्कुल साफ है।

कुछ बड़े बड़े पौधे भी लगे हुए हैं।